नहाने के लिए सुविधा है और आसमान में बहोत रंग-बिरंगे छाएं पड़े हुए हैं और एक हरा-भरा नीला --

और इसमें तार यहां से जॉइनिंग होकर गई है और छोटे-छोटे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और हरे-भरे घांस भी है।

और दो चार छे चक्का का ट्रक हो गया ये आपका--

और काट कर बेचे जा रहे हैं कुछ लोग इलीगल तरीके से भी बेचते--

हेलो गाइस ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी दुकान है इसके अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं और--

इस सजावट में बहोत सारे सजावटे है जैसे की--

टेबुल है और कुर्सियां और उसके ऊपर एक--

लैपटॉप कंप्यूटर और सेल फोन लेकर अपना--

सो हेलो गाइस आप ये देख सकते हैं बहोत बड़ी मंदिर नजर आ रही है।

हेलो गाइस आप ये देख सकते हैं चलती रोड में कुछ लोग ढाबा के पास खड़े हैं और गप्पे मार रहे हैं।

हे गाइस आप ये देख सकते हैं ए मस्जिद के अंदर--